यह एक गाड़ी है जिसे बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोर किया गया है।

यह एक बहोत ही सुंदर बेडरूम है यहां पे एक ए_सी भी लगी हुई है।

यहां एक पेड़ है जिसमें पिंक कलर की बहोत अच्छी फ्लावरिंग होई हुई--

यह जिम एकदम नया है यहां एक पंचिंग बैग भी टांगा गया है जो बिल्कुल ही नया है।

यहाँ पर कुछ और दुकानें हैं जो कुछ बंद है और एक दो खुली हुई है यहाँ एक गाड़ी भी --

यह एक नदी है जहां पर एक बहोत बड़ी नाव लाई जा रही है किनारे--

दुल्हन के पीछे एंट्री ले रहे हैं बगल में बहुत सारे लोग खड़े है।

यह एक मंदिर का पिछला हिस्सा प्रतीत हो रहा--